गुफा के नीचे खड़ा हुआ है उसने नीले रंग की कमीज पहेनी हुई है।

गुफा में बहोत सारा अंधेरा दिखाई दे रहा है।

के आस पास बहोत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है यहां कई झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

और उस पर कुछ फूल बने हुए हैं।

अनके ऊपर बहोत बड़ा बोण --

पूरी दुकान राखियों से भरी हुई है।

यहां पर सीमेंट भी पड़ा हुआ है।

दुकान की है उसके पास और भी कई दुकानें है यहां कई आदमी भी--

सफेद रंग की है यहां पर कई--

बहोत सारे लोग बैठे हुवे हैं और कुर्सियाँ बी--